इनका कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है| यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक चेयर दिखाई दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फर्नीचर --